किसी मैदान का पिक नज़र आता है बहोत ही दूर तक यह मैदान फैला हुआ है।

मकान है जो के दो तीन चार मंजिला लग रहा है । और--

ये मुस्लिम से रिलेटेड किसी चीज का मकान है हो सकता हो मदरसा हो मस्जिद हो ।

यहाँ पे बहोत बड़ी सी इमारत है जो की बहोत अच्छे से सजाई गई है।

राइट इंग्लिश कम्प्लीट टेक टेक्स्टबुक सोल्यूशंस और ये है चार बंडल ।

एक बड़ा सा गेट जैसा बना हुआ है आने जाने के लिए बीच मे रास्ता हैं।

एक मस्जिद है जोकी तीन मंजिला मस्जिद है और ऊपर बड़ा स हरे रंग का गुंबज है।

चित्र मे किसी मेडिकल हॉल चित्रण दिखाया गया है जिसपे बड़ा सा बोर्ड लगाया है।

और कुछ पैकेटस लटक रहे है दुकान मे और अच्छा लग रहा है ।

और इसपे लिखा है राजकीय औद्योगिक परिक्षण संस्था।